एक बहुत अच्छा सा एग्जीबिशन चल रहा है जिसमें --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

इसने नीले रंग की कैप लगायी हुई है नीले रंग का हाफ चड्डा --

घर में तीन मंज़िल का दिखाई दे रहा है | इसके आगे --